ये एक गेट है जो की हरे कलर का ये गेट है यहाँ पे दीवाल भी है जिसमें हरे कलर के फूल बन रहे है पीछे पेड़ भी है और पीछे खुला आसमान भी दिख रहा है यहाँ पर डोरिया भी लग रही है और यहाँ पे सीमेंटेड रोड भी है।

पीछे पेड़ भी है घर के अन्दर भी पेड़ है और आजू बाजू में भी काफी पेड़ है पीछे बादल भी है साइड में बड़ा ग्राउंड भी है दीवाल भी है बाउंड्री भी हो रही है।

किराना स्टोर है और यहाँ पे एक शॉप है यहाँ पे बहुत सारी चीजे रखी है यहाँ पे सुफ़ोला रखा है यहाँ पे बहोत सारी चीज़ें राखी भी है यहाँ पे कॉर्न्स भी रखे हैं।

और इसका कलर ब्लैक है और यलो भी है और यहां पे खिड़कियां भी है जो की काफी अच्छी है।

और यहां पे बैनर भी लग रहा है और ये काफी बड़ी मजिद--

ग्राउन्ड है जोकी काफी बड़ा ग्राउन्ड है यहाँ एक बाइक खड़ी है और यहाँ पे गेट है जोकी लोहे का यह गेट है शटर वाला और यहाँ पे बाउंड्रीया भी हो रही है अ और पीछे काफी पेड़ भी है ऊपर आसमान भी दिख रहा है जोकि खुला है।

ये एक ग्राउंड है जो की यहा पे क्रिकेट ग्राउंड है एक लाईट भी है और पीछे काफी बड़ा स्कुल भी है दोनों साइड--

ये एक ग्राउंड जो के काफी बड़ा है पीछे काफी सारे पेड़ भी लग रहा है पीछे खम्भा भी है जो के लाईट का है यहां पे बहुत सारी जालियाँ भी लग रही है।

और यहा पे पाइप लाइन भी बेच रही है जो की लाईट की पाइप लाइन है यहां पे एक लड़का है जो की काम कर रहा है।

और यहा पे पंखे भी लग रहे है और खिड़कियां भी है और पीछे घड़ी भी लग रही है।